इस इमेज में हमें एक मेला दिखाई दे रहा है मेले में झूले लगे हुए हैजिन्हें काफी अच्छी तरीके से लाइट से डेकोरेट किया गया है यहाँ पे बहुत सारे लोग है।

इस इमेज में काफी सारी बोटे दिख रही है बोटे बहुत बड़ी बड़ी है और अलग अलग साइज की है।

इस इमेज में हमें एक नदी दिख रही है नदी के ऊपर एक पुल दिख रहा है पुल के ऊपर एक युवक खड़े होके उस नदी को निहार रहे है नदी काफी बड़ी और काफी सुन्दर है।

नदी के एक साइड पेड़-पौधे और पहाड़ नजर आ रहें हैं पेड़ काफी सुंदर-सुंदर हैं नदी के पास में काफी जगह खाली पड़ी है जहाँ मिट्टी नजर आ रही है।

फोर उम्म फोर काउंटर्स पे भीड़ लगी हुई है।

वाहन खड़े हुए हैं यहाँ पे बहोत सारे लोग भी हैं जो आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं कुछ ऑटो में बैठ रहे हैं कुछ ऑटो से उतार रहे हैं कुछ वहाँ क घूम रहे हैं।